इस घर के ऊपर में हैदराबाद बैंक लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा है.

एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें ओपो लिखा हुआ है.

जिम व्यक्ति कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं.

पिंजरा के अंदर दो पैरोट दिख रहे हैं

ओर बहुत सारे चदरे भी दिख रहे हैं.

इसमें एक लड़का दिख रहा है लड़का हेयरकट कराया हुआ है.

तीन व्यक्ति भी खड़े हैं.

यह एक गार्डन है.

पिले कलर के दिख रहे हे.

इसमें बहुत सारी साइकिले रखी हुई है.

मज़ार के बहार कुछ आदमी दिख रहे हैं.

मेला में बहुत सारे झूले दिख रहे हैं.

रूम के अंदर दो व्यक्ति दिख रहे हैं.

अब टेबल के ऊपर पानी की बोटल रखी हुई है बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एफ_एम_सी लिखा हुआ है.

एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है.

इसमें एक बोर्ड दिख रहा है.

जिसमें आई लव रांची लिखा हुआ है.

और लकड़ी का रैक बना हुआ है.